एक व्यक्ति मोटरसाइकल पर आ रहा है एक ऑटो खड़ा हुआ है जिसमें एक ड्राइवर और सावरी बैठी हुई है।

धुप से बचने के लिए छत भी बनाई गई है बच्चों को आकर्षित व खेलने के लिए बड़े बड़े से कार्टून भी बनाए गए हैं।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

यहां पर हमे बहुत ही सुंदर व विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमें कुदरत का बहोत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने एक स्टेज बनाया गया है जिसपे हरे रंग का कपड़ा पिसाई गया है और एक सफेद की कुर्सी पड़ी हुई है।

इसके उपर एक हरे रंग का बोर्ड लगाया गया है जिसके उपर लाल और सफेद रंग से कुछ लिखा गया है।

इस तस्वीर में हमें बच्चों के खिलौनो की दुकान दिखाई दे रही है।

इमारत के अंदर जाते हुए उसके ऊपर काले रंग से इमारत का नाम लिखा हुआ है और वह जानकारी लिखी हुई है।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

दुकान के बाहर एक सफेद व एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

एक मेज के ऊपर केक रखा हुआ है और उसके इर्द गिर्द कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं।

सड़क के किनारो पर लकड़ी की झोपड़ियां बनी हुई है और अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं।

पहाड़ों के बीच संतरे रंग की खुदाई करने वाली मशीन खुदाई कर रही है।

इस तस्वीर में हमें एक वैद्य की दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान के अंदर हरे रंग का कपड़ा टांग कर पर्दा लगाया गया है।

दुकान के अन्दर लोहे के रैक बनाकर उनमें समान को सजाया गया है।

एक वृक्ष है जिसके ऊपर गु हरे रंग का बलब लगा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें पुरातन समय में किलो के जैसे दिखने वाली एक बहोत ही खूबसूरत व विशाल इमारत दिखाई दे रही है।

इमारत में बहुत सारी खिड़कियां है जिनको काला रंग किया गया है।

इस तस्वीर में हमें एक मंदिर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कक्षा की छत पे कुछ पंखे लगाए गए हैं और बलब लगाए गए हैं।

यहां पे एक व्यक्ति मोटरसाइकल पे महिला के साथ जा रहा है।

यहां पर एक लाल रंग की बाल्टी और लाल रंग की पीढ़ी पड़ी हुई है।

इस तस्वीर में हमें कई प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इमारत के पास कुछ पौधे उगे हैं जिनमें गुलाबी रंग के फूल उगे हुए हैं।

मैदान की सुरक्षा के लिए उसके आसपास ईंटों की एक दीवार बनाई गई है और कुछ जगह पर तारे लगाई गई है।

इस तस्वीर में हमें कुछ व्यक्ति रास्ता पार करते दिखाई दे रहे है और एक व्यक्ति मोटरसाइकल पे आ रहा है।